बड़ा सा टेबल है टेबल के ऊपर गोल दस्ता रखा गया है।

और यहां पे भी बैठने के लिए सोफ़ा सेट है और दीवार का फ्लोर यहां पे रहा है।

यहां पे एक होटल अलग रह रहा है जो यहां पे बैठने के लिएकुर्सी और टेबल दिख रहे हैं।

यहां पे पर्दा है लाल कलर का यहां पे और यहां पे है --

और नाम लिखा है टी_वी चैनल आदि --

और अ अ अ छाप लिक्स गया है और यहां पे दिवाल पे भी लिखा गया है।

फोटो स्टेप एक दासमौलाउ पांच जीरो और कलर प्रिंट आउट मोबाइल प्रिंट आउट टाइप --

यहां पे है एक बड़ी सी है जो यहां पे परे उड़ रहे हैं और यहां पे पानी है जो बहुत सारा है।

यहां पे एक होटल नजर आ रहा है जिसका है महाजन केकस एंड बेकस लिखा गया है और यहाँ पे फ़ोन नंबर रजिस्टर नंबर दो हैं।

यहां है बेड है सोफा पिलर --

और नज़र आ रहे हो गाड़ी ले के जा रहा हैं।

जाने के लिए एक रास्ता भी है यहां पे आसमान से बादल नजर आ रहे हैं और यहां पे भी है टेपू की तरह यहां पे घर है और हाथ भी --

यहां पे बड़ी सी और साइड में है और यहां पे शेर भी सामने सेट दो--

बार वो एक आदमी हो जाता --

बेंचेस है बड़े फैंसी हैं यहां के बेंचेस बैठने के लिए टी_वी नजर आ रहा है जो यहां पे बहोत खूबसूरत दिख रहा है खिड़की है जो खिड़की चालू है यहां पे--

यहां पे रात का टाइमिंग है जो यहां पे साइड में गमले रखे हैं।

वाइट और लाल नजर आ रहे हैं यहां पे जाने के लिए रास्ता है और यहां पे ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां हैं।

दो तीन यहां पे लाइट लगाए हैं और यहां पे शटर है और एक और भी काम कर रहा है।

यहां पे एक गोल हैं बाद बॉय है --

फड़की है कांच की आसमान नीला नजर आ रहा है साइड में बादल दिख रहे हैं एक बिल्डिंग का कलर है वाइट और यहां--

बहुत सारे यहां पे बॉयज है जो यहां पे पेपर में नोट कर रहे हैं जो जो भी ये पढ़ा रही है बर्थडे है।

नीचे जो यहां पे काले कलर और चॉकलेट और यहां पे है ए_सी लगाया हुआ फैन है यहां पे दो चार फैन लगाए हुए हैं वाइट कलर के--

सो रहे है तो --

औरयहां पे आसमान जो नीले कलर का धूप भी नजर आ रही है और यहां पे सामने ला रही है।

डेकोरेट किया गया है जो यहां पर मंडर डाला हुआ है पुगे कलर नीला वाइट --

यहां पे फोन चला रहा फोन --

अ लोहे अ अ लोहे से ऑर्डर किया --

यहां पे बहुत सारेजो खड़े है ए _सी चल रहा है।

यहां पे रात से सिटी दिखाई दे रहा है और रात का टाइम है।

यहां पे एक दुकान है लिखा गया जो यहां पे और यहां पे--

और यहां पे है एक जो यहां पे यहां पे जाने के लिए रा--

यहां पर रात का टाइम है लाइटिंग लगाई गयी है।

यहांपे रोड है ट्रेलर रुकी है और यहां पे खड़े लाइट के जो रात में चालू होते हैं।

यहां एक बहुत खंभों है बहुत सारे पेड़ --